एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे ट्रके है यहाँ बहुत सारे साधन चल रहे है बिल्डिंग दिखाई दे रही है।

ई ब्लैक कलर के पौधे दिखाई दे रहें हैं जेंट्स बैठा हुआ है पत्थर दिखाई दे रहें हैं।